गाड़ी में तेल भरवाने के लिए रिचलभरवाने के लिए और यहाँ पर काफी सारे जनन करने है। यहाँ पे एक स्कूटी भी है। जोकि पेट्रोल भरवाने के लिए एक भैया आए हुए है।

यहां पर से खुला आसमान का व्यू दिखता है। और यहां पर काफी सारे घने पेड़ हैं।

यहां पर एक शोरूम है। यहां पर काफी सारे न्यू गाड़ी मिलते हैं। और यहां पर नए-नए ब्रांड के जो भी होते हैं। जैसे कि अम्म जुपिटर स्कूटी में फिर या बाइक वगैरह में जैसे बुलेट वगैरह--

टेबल पर कवर पहनाया हुआ है। यहाँ पे बोहत महँगी-महँगी लाइट्स लगी हुई है। यहाँ पे विंडोज भी है। और यहाँ की दीवाल में बोहत अच्छा पैंट किया गया।